आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर हिंदुओं के पवित्र त्यौहार दशहरे की है।

साथ ही बगल में एक एटीएम भी दिख रहा है।

जहां पर आप जाकर कैश निकासी कर सकते हैं।

यह तस्वीर एक पार्क का है।

आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर एक आवासी मकान की है।

जहाँ पे कुछ मोटरसाईंकलें पार्क हुई हैं।

और कार के पीछे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग है जोकि शायद चर्च प्रतीत हो रही --

और एंट्रेंस द्वार के अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको अ एक मंदिर दिखेगा।